यह चित्र का चित्रता देने वाली हैं ये अच्छी --

थ्री सूर्य नेचुरल स्टोंस होते हैं।

फल होते हैं ये हरा भरा में लाल रंग में --

किया गया है ये अच्छी--

यह सब बिल्कुल ठीक नही है।

यहा चित्र का चित्रता--

चित्र का--

अच्छी तरह से सभी लोग--

अच्छी तरह से देने वाली--

जनरल स्टोर्स होती है लाल रंग में--

है ये सभी कुछ भी नहाते है।

तारा देने वाली है ये कुछ पैकेट्स में सहा--